जो कि आगे में एक दो मंजिला घर भी है जिसपे अक्षय पैलेस का बोर्ड लगा हुआ है।

बाहर आने भीड़ लगे हुए हैं बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे--

इस पिक्चर में बहुत बड़ा बंगला दिखाई दे रहा है जिसके बाहर लिखा गया है।

पानी भी बह रही है ऊपर स्काई भी दिख रहा है और बादल भी दिख रहा है।

और अगल बगल बहुत सारे खेत दिखाई दे रहे हैं।

जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग खड़े हैं।

इस तस्वीर में वह एक काउंटर बना हुआ है उसमें बहुत सारे सामान रखे गए हैं।

गेहूँ भूसा निकलवा रहे बगल में बहुत सारे बोरे में गेहूं भरा हुआ भी दिखाई दे रहा--

बैंगन गाजर और भी बहुत प्रकार के सब्जी रखे हुए--

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे रंग बिरंगी कुर्सी दिखाई दे रही हैं।

एक आदमी भी दिखाई दे रहे हैं जो काउंटर पर बैठे हुए हैं।

इन्हें एक छाया में रखा गया है जहां सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है।

एक छोटा पेड़ है और एक हरा बोर्ड लगा हुआ है।

वह एक सॉक्स भी पहना है बगल में एक बैग है।

बगल मे प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग भी किया जा रहा है।